और इधर बहुत सारे लोग बैठे हुए है। और बहुत सारे लोग खड़े हुए है । और उसके बीच मे एक मन्दिर जैसा है।

अ ये एक मेला जैसा पोग्राम है और इधर बहुत सारे देवी-देवताओं की मूर्ति लगी हुई है और नीचे काफी सारे लोग देख रहे हैं मूर्ति को।

और एक आदमी जो नीचे आदमी खड़ा है उसने एक ब्लेजर जैसा पहना हुआ है और उसके नीचे खडे --

और सब एक नीला कलर की लाइट दिखाई दे रही है और उसके बगल में बहुत बड़ा ड्रम पड़ा हुआ है।

और बच्चों के पीछे एकदम एक दो जाले लगी हुई है और बच्चो के अगल बगल मे उसके पीछे दीवाल है और दीवाल का कलर लाल है।